ये एयरटेल नामक कंपनी की ब्रांच की है जहाँ पे हम देख सकते हैं की शीशे का गेट लगा हुआ है और अन्दर --

आदमी खड़े हैं एवं बाहर भी कुछ इंसान खड़े हैं एवं कंपनी का ही एक युवक लाल टी-शर्ट पहनकर गेट के बाहर पहरा दे रहा है।

पुरानी चीजों को भोत संभाल कर रखा गया है ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचा सके जैसा कि हम देख सकते हैं।

मंदिर के अन्दर एक हिन्दू देवी अपनी सवारी पे बैठीं है एवम मूर्ति को फूल मालो से ढका गया है।

भीर को देखके हम अनुमान लगा सकते हैं की ये तस्वीर किसी हवाई अड्डे की चेकिंग --

हम ये देख सकते हैं की यह तस्वीर किसी पुल से खिंची हुई है। बीच में एक पीली रंग की लाइन --

सड़क को दो बराबर भागो में बाँट रहे हैं एवम् सड़क पे गाड़ियों का आवागमन लगा है।

यह तस्वीर किसी रॉयल वेडिंग हाउस नामक मैरिज हाउस का है जहाँ पे हम देख सकते है की सजावट को बहोत खूबसूरती से किया गया है।

पल्सर गाड़ी लेके खड़ा है और शायद कुछ पैसे गिन रहा है।

यह तस्वीर किसी सलून की है। यहाँ पे लोग अपने बाल कटाने अपने फेसिअल वगैरा कराने आते हैं।

तस्वीर में देखे तो हम। यह तस्वीर भारतीय एम्बलम यानी भारत के एम्बलम का चिन्ह है जो सेज अभी हम देख सकते हैं।

गोरखपुर के उर्वरक नगर के फ़र्टिलाइज़र फैक्ट्री का तस्वीर है। जहाँ पे खाद बनाया जाता है एवम यह खाद पूरे भारत में --

एवं बोहोत दूर तीन लोग जाते हुए भी दिख रहे हैं और अगर हम लो प्लेटफॉर्म के पार देखें तो मालगाड़ी में सामान भी भरा रहा।

ये ये किसी रेस्टोरेंट की है। यहाँ पे एक लंबा बीच में टेबल एवम अगल बगल क्रम से कुर्सियां लगी हुई हैं और ऊपर --

यह तस्वीर किसी बस अड्डे की है। यहाँ पे एक सफ़ेद एवम नीला कलर का बस खड़ा है और बस के अन्दर यात्री घुस रहा है और --

कुछ यात्री अपनी राह में चलते हुए दिख रहे हैं और --

या स्वर्ण से धातु से बनी है। यह मूर्ति अपनी साधना आसन में बैठीं है एवम सर में उनके --

ये कोचिंग संस्थान यह किसी शिव नामक कोचिंग की है। यहाँ पे आई.ए.एस. पी.सी.एस. यु.पी.पी.एस.सी. सिविल जज --

ए.पी.ओ. नेट एस.आई. एस.एस.सी. और अदर --

यह काली-काली टीवीयाँ वहाँ लटकीं हैं की ये कोई ईमारत हो।

यहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ घूमने और अपनी छुट्टियों का मज़ा लेने आ --